उसके पीछे खिड़की खुली हुई हैं और वाइट कलर की गाड़ी के पीछे नंबर लिखे हुए हैं आर_जे जीरो चार सी_बी --